बहुत सारी लम्बी-लम्बी पेड़े दिखाई दे रही है मुझे फिर प्लास्टिक भी बीखरा हुवा है एक चक्का भी है फिर रोड है।

ये पिक में मुझे दिखाई दे रहा है एक पेड़ है जिसके शैडो ज़मीन पर दिखाई दे रही है छोटी छोटी पहाड़े भी हैं और --

बहुत जंगल सा है फिर कुछ शेडो आ रहा है रंग-बिरंगा फिर ब्लैक रेड कलर की कुछ दिखाई दे रही है स्किन इसमें।

खिड़की है एक दरवाजा है कुछ दरवाजा में कुछ रेड कलर का दिख रहा है पेन्ट ।

ये इमेज मे मुझे कुछ लोग पूजा करते हुऐ कुछ नहाते हुए दिख रहे हैं ये कोई घाट का तस्वीर है एक नाव है जिसमे --

एक रेड कलर का कपेट टंगा हुआ है कुछ पुतले में कपड़े टंगे हुऐ हैं बल्ब लगाय गए है कुछ बोरे भी दिखाई दे रहें हैं।

इस इमेज में मुझे हरे कुर्सियाँ कुछ जार जिसमें खाते हैं वो टेबल घर फिर लाल जंडा फिर एक --

पेट दिखा रहा है और मस्जिद मे दो ताज महल के ऊपर वाले हिस्से बने गए हैं इसमें छे --

इस इमेज में मुझे तीन घरें दिखाई दे रही है एक बड़ी इससे मिडिल फिर इससे छोटी घरे दिखाई दे रही है फिर एक बॉउंड्री दिखाई दे रही है फिर यलो-यलो --

कुर्सियां भी रखी गई है नीचे एक गमछा फेका गया है नीचे का फर्श ग्रीन है।

ये इमेज में मुझे एक घर दिख रहा है जिसके नीचे छोटे-छोटे दो गमले रखे गए हैं जिसमे पौधे उगाए गए हैं सीरियाँ दिख रही है।

ये इमेज में मुझे सब्जी का मार्केट लग रहा है उपर प्लास्टिक के चादरे बिछाई गई एक आदमी --

ये इमेज में मुझे लंबी बिल्डिंग दिख रही है जिसमे बहौत सारी रुमे हैं नीचे एक स्काई ब्लू कलर का कार खड़ा हुआ है।

और घर दिख रहा है एक लंबी सी पेड़ दिख रही है बादल भी साफ दिख रहें हैं एक छोटा सा गार्डन दिख रहा है जिसमें --

कलर का आदमी झोला ले के चल रहा है एक पिंक कलर का इंसान पहना हुआ है जो चल रहे हैं बोहो --

इस पिक्चर में मुझे एक शादी का डेकोरेशन लग रहा है एक माइक है कुछ लोग किताब पढ़ रहें हैं औरतें दुपट्टा ले हुए है ऊपर में सजावट हुए हुआ है।